कुछ कांच के शीशे लगाए गई हैं।

लगाई गई हैं और बेंच के ऊपर--

और यहां पर कुछ लोग इकट्ठे --

और यहां पर कुछ समान रखा हुआ है।

कुछ झूले लगे हुए हैं आसपास कुछ पेड़--

और यहां पर कुछ डब्बे रखे हुए हैं और जहां पर कुछ--

और यहां पर कुछ खाने पीने की चीजे रखी है।

और यहां कुछ कांच के दरवाजे लगाए गए हैं।